एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में व्हाइट कलर का पेंट हो रहा --

लड़का भी हो रहा है और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं स्टील की दिखाई दे रही हैं व्हाइट कलर की और --

एक मकान दिखाई दे रहा। मकान में व्हाइट कलर का पेंट हो रहा। कुछ को डायग्राम भी बने हुए हैं। भगवानों के डायग्राम बने हुए हैं।

एक मकान दिखाई दे रहा। मकान में रेड कलर का पे भाईट कलर का पेंट हो रहा। गोल्डन कलर का भी हो रहा हुआ और लाल कलर --

दिख रहा है। लाल कैबिन भी दिख रही है। ब्लै --

और पार्क लगे हुए --

पर्दे दिखाई दे रहे हैं। मेहरून कलर के और --

मार्केट दिखाई दे रहा। मार्केट में पिंक कलर के फूल भी दिख रहे ग्रीन कलर के भी हरे कलर के भी।

दिखाई दे रहा है। एक लड़का दिखाई दे रहा है। हरे कलर के फर्श पे खड़ा हुआ है जो --

एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में खिड़की दिख रही खिड़की में मालायें लटकी हुई हैं।

दोनों पीले कलर की दिखाई दे रही। नीचे का नीचे भगवान की मूर्ति बनी रखी हुई है।

और लाल कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है और कुछ --

पर्दे भी दिख रहे। उसमें सलेटी कलर पेंट हो रहा है। नीचे भी फर्श बिछा --

ऊपर बादल भी दिखाई दे रहा है नीले कलर का और व्हाइट कलर का और नीचे पहाड़ के नीचे व्हाइट --

ब्लैक कलर की और पेड़-पौधे दिख रहे। नीचे मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है। दो-तीन जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं।